यह एक पेट्रोल पंप की तस्वीर है जहाँ पर चार लाइटें --

कोने कोने में लगी हुई है यह सीमेंट की टूटी हुई--

यहाँ एक पेड़ है उसके दाएं तरफ--

ऊंचाई में ढेर सारे पेड़ है जो जंगलनुमा प्रदर्शित हो रहे है सामने--

चार पांच तार आते जाते दिखाई दे रहे है पानी में खुछ घास दिख रहे है।

जो काफी ऊँची दिखाई पड़ रही है।

सामाने खम्बे है. जिसके ऊपर से ढेर सारे तार दिखाई दे रहे है।

ये देखने से नए बैंक का उद्घाटन हो रहा है।

सामने एक खम्बा भी है जिसे ऊपर से नीचे तक जमींन पे तार जुड़ी हुई दिखाई पड़ रही है।